गेट दिखाई दे रहा है जो सिल्वर कलर का है और टाइल्स दिखाई दे रही है जो ब्लैक एंड वाइट कलर की है।

कुछ बाइक्स खड़ी है और एंट्रेंस पर ही गमलो क से लगा हुआ है पौधे दिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पॉल दिख रहा है वही इलेक्ट्रिकल वायर्स भी दिख रहे हैं।

दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और जे मे कुछ कार्ड्स से बना हुआ है रूम नजर आ रहा है ।

दिखाई दे रहा है जहा कुछ चेयर्स नज़र आ रहे है जो ब्लू कलर के है टेबल्स है जो वाइट कलर और क्रीम कलर के है दीवार दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है ।

रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर बेन्चेस लगे हुए है। जो ब्लू कलर से रंगे हुए है। दिवार नजर आ रही है ग्रीन कलर से रंगी हुई है।

इलेक्ट्रिकल वायर दिखाई दे रहे हैं एक कार वहां खड़ी हैं जो व्हाइट कलर और कुछ बाइकस दिखाई दे रहे हैं जिसके मिरर नजर आ रहे हैं।

एक बहुत बड़ी जगह दिखाई दे रही है जहां पर बाइक्स खड़े है और ऑटो-रिक्शा खड़ी है जो इलेक्ट्रिकल्स होती है वही पेड़ नजर आ रहे है।

एक बड़ी सी जगह दिखाई दे रही है वहां पर एक स्टैचू नजर आ रहा है वहां पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो क्रीम कलर से रंगी हुई है स्तंभ जो चार दिखाई दे रहे है वो व्हाइट कलर से रंगे हुए है।

बहुत बड़ी जगह दिखाई दे रही है। जहाँ पर काफी घास उगी हुई है। पेड़ दिखाई दे रहे है हरे हरे।

और यहाँ पर कुछ बड़ी-सी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर घने पेड़ नजर आ रहे है हरे-हरे और सामने में एक बिल्डिंग दिख रही है जो क्रीम कलर से रंगी हुई है ।